इस तस्वीर में हम एक विधालय देख पा रहे हैं एवं यहाँ पर हम एक विधालय के दरवाजे को देख पा रहे हैं। यह एक लोहे का बना हुआ दरवाजा है काले रंग का दरवाजा है।

इस तस्वीर में हम एक रास्ता देख पा रहे हैं एवं यहाँ पर बहुत से मकान भी देखे जा रहे हैं। इस तस्वीर में हमे कुछ छोटे-से घर देख पा रहे हैं।

और यहाँ पे कुछ दो से तीन मंजिला घर भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर कुछ दो पहिये वाले एवं कुछ चार पहिये वाले वाहन भी देखने को मिल रहे हैं ।

यहाँ पर तो मशीन उपलब्ध है एवं यहां पर बहुत ही समतल एवं साफ सुथरा स्थान है।

यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर लोग अपने गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए आया करते हैं।

इस तरह कि ये धार्मिक स्थल हमारे घर आस-पास भी देखने को मिल जाते हैं ऐसे स्थानों पे लोग पूजा करने जाते हैं।

यहाँ पर बहुत ही सुंदर समतल स्थान देखने को मिल जाता है।

तस्वीर में हम एक रास्ता देख पा रहे हैं। रास्ते के किनारे पर एक संतरे कलर एवं पीले कलर का मंदिर स्थित है। यह एक हिन्दू धर्म का मंदिर है ।

इस तस्वीर में हम एक दुर्गा माँ का पंडाल देख पा रहे हैं। इस पंडाल के भीतर दुर्गा माँ की प्रतिमा लगी हुई है। यह एक पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय पर्व है।

तस्वीर में हम एक मेला देख पा रहे हैं। यहाँ पर चार से पाँच बड़े-बड़े झूले लगे हुए हैं। इस तरह के झूले बहुत ही विशाल होते हैं। यहाँ पर बहोत से व्यक्ति एक जगह इकट्ठा हुए हैं।